जिसमें लोहे की चड़ाव लगी हुई दिखाई--

दिखाई दे रहा है जिसमें व्हाइट कलर के फर्नीचर से--

बिल्डिंग के नीचे एक छोटी सी बैंक बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां एक पेड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा है जहां एक चेयर रखी--

इसके अंदर लोहे की पाइप से--

यहां पर एक बड़ा सा मंदिर--

दिखाई दे रही है कांच की टेबल पर एक येलो कलर की बॉटल दो चाय के कप रखे हुए--

एक छोटासा काउंटर बना हुआ दिखाई--

यहां पर एक क्रिश्चन मंदिर बना हुआ है जहां पर--

छोटी छोटी लाइठो से डेकोरेशन करा हुआ दिखाई दे रहा है।

दिख रही है जहां बाहर ड्राई फ्रूट की टोकरी होन--

लकड़ी का फर्नीचर बना हुआ है जहां एक पंखा भी दिख रहा है।